एक मोटरसाइकिल रेड कलर की है और दो वाइट कलर की स्कूटी है पीले कलर की एक बस भी खड़ी है।

जिसमे पीले रंग की उसकी चोंच है एक पैर उसने उठाके रखा है जो पीले रंग का है।

और सामने में हरे कलर की एक गैलरी बनी है जिसमे हरे कलर का एक पाइप भी लगा है।

जिसके दो बड़े बड़े गुम्बट दिखाई दे रहे है साथ में एक बिजली का खम्बा है।